सामने की तरफ एक गुलाबी रंग की बोतल भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

वहां पीछे की तरफ कुछ सफेद रंग की इमारतें भी दिखाई दे रही है।

एक पहाड़ में तो बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

उस इमारत के ऊपर सुरेंद्रनाथ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह चित्र किसी जिम का दिखाई दे रहा है जहां कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यहां अलग अलग मशीने भी दिखाई दे रही है जिनमें लोग कसरत करते नजर आ रहे हैं।

यहां कुछ पुस्तके भी दिखाई दे रही है।

यह चित्र किसी इमारत की दिखाई दे रही है जहां कई सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है।

इनके हाथ में सफेद रंग का कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

यहां कांच की मदद से बनी द दिवाले भी दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक औरत अपनी तस्वीर लेती दिखाई दे रही है ।